और साइड पे काफी लंबे थान भी नज़र आ रहें हैं ऊपर एक मंदिर सा नजर आ रहा है जिसके साइड में फ्लावर हैं ऊपर एक साड़ी भी नजर आ रही है हैंगर पे नीचे कुछ बॉक्स --